तथा बाउंड्री का कलर वाइट कलर से पेंटिंग से पैंट किया हुआ है तथा बाउंड्री के चारों तरफ स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है जो की बहोत बड़ी-बड़ी है।

मंदिर के पीछे दो मंदिर और बने हुए है ये सभी वाइट कलर के पुते हुए हैं और उनके किनारे किनारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

और इसमें एक बड़ी सी डिब्बा दिखाई दे रहा है इस डिब्बे में भैंसे पानी पीते हुए दिखाई दे रही है और कुछ बाइक्स भी किनारे खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

और इसपर एक व्यक्ति अंदर की ओर बैठ हुआ है जोकि दूध बेच रहा है।

सामने हमें एक डेरी की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें लिखा हुआ है मुजफ्फरपुर डेरी जिसके अंत अंदर एक औरत है |

सामने हमें तीन स्कूटीयाँ दिखाई दे रही हैं।